और गिट्टी बालू छत पर रखी हुई है और बोहत सारे गमले भी है।

जिसमें काफ़ी सारे दरवाजे है और सभी दरवाजे जो है वो ब्लू रंग में है और दिवार जो है वो उजले रंग कि--

इसमें एक युवती जो है वह बैगनी कलर कि टॉप और ब्लैक कलर जीन्स और वाइट जूता --

एक नदी है नदी के ऊपर दो पुल दिखाई दे रहे हैं एक पुल रेल के लिए है और एक पुल आ --

एक नदी है नदी के किनारे में कुछ लोग भी है ।

और किनारे में बड़े- बड़े पहाड़ है और हरे -भरे बीच है रहने घने वाले --

जिसमें काफ़ी सारे जिसमें काफ़ी सारे सोफा लगे है नीले रंग --